आदमी बैठे हुए हैं और एक दो आदमी --

इस इमेज में सामने दो चार --

इस चार तम्बू दिख रहे और --

बोर्ड भी लगा है जिस पर डाइट क्री सी लिखा हुआ है और बाहर --

इस इमेज में दो लड़के आते हुए दिख रहे हैं और सामने लड़का और लड़की की फोटो लगी हुई है ।

इस इमेज में तीन चार लोग खड़े हुए हैं और तीन चार लड़कियाँ अंदर जाती हुई दिख रहीं हैं और कुछ मोटरसाइकिल खड़े --

और उसके आजु बाजु हरी घांस भी दिख रही है और सामने लाल--

इस इमेज में एक सफ़ेद रंग का घर दिख रहा है और उसकी बहार एक नीले रंग का --

इस इमेज में हम बहोत ही--

कुर्सी पर बैठे हुए और कुछ --

यहाँ थुब्बारे लगे हुए है और कुछ गमले भी रखे हुए एक आदमी बात चित कर रहा है।